एक कमरा है कमरे के ऊपर एक पंख लगा हुआ है छत है छत पे बहुत सारी लाइटे जल रही है।

इसका रंग सफेद है एक दीवाल है दीवाल पे फोटो लगी हुई है।

एक बांध है बांध के ऊपर एक लोहे का खंबा लगा हुआ है।

तार निकली हुई है नीचे एक कमरा बना हुआ है।

सड़क पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है पीछे एक मकान है।